बीच मे एक टेबल भी दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ खिड़की भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक ब्लू रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर सामने एक गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है यहाँ पर सामने एक रास्ता भी नजर आ रहा है।

और यहां पर लाइट के खंभे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर वाटर पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर पानी में कुछ लोग नहाते नजर आ रहे हैं।